पत्थरो पे ग्रीन और ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है पिंक कलर दिखाई दे रहा है और बहुत सारा कलर्स दिखाई दे रहा है यहां बहुत सारे छोटे-छोटे पत्थर दिखाई --